पार्टी हो रे लई छय एक फुकना लग ले छय सब जनता सब बैठलो छे कुरछी लग ले से कुरछी लाल से--

दो आदमी काम कराई छे एगो घर बड़का गो छे उ हरा रंग के रंगलों छे ईटा लाल छे ईटा रखाल छे कितना अच्छा लगई छे।

एगो मरदवा कपड़ा प्रैस करे रहल छे उ बेड पे लेटले लेटलों छे कपड़ा के--

ड्राम रखलों छे उ मरदवा के हाथ मे गलफ छे एगो मरदवा के लाल शर्ट छे एगो मरदवा के जिन्स पहनले छे बड्डी शर्ट लपेटलों छे।

तींगों जनी बैठलो छे गोड़ पसार के बैठला छे पसार के बैठला छे लागी छे भीख मांगे छे।

एगो गाड़ी से जार लय छे एगो टकला बुढ़्वा छे

बल र ल छ लगी छै नीचे बलफ़ बरई छै टाइल्स लग्लो छ कि कार छै।